और कहीं मिट्टी है और कहीं पत्ते गिरे हुए हैं कहीं छोटे-छोटे कंकड़ भी दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जिसपर टाइल्स लगी हैं चारों तरफ मैदान में कहीं छोटे पेड़ लगे हैं और कहीं घाँस दिखाई दे रही है।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

जो कि कांच का बना हुआ है। सामने कुछ सीढ़ियाँ हैं और ऊपर एक बैनर लगा है। जिस पर बजाज लिखा है सामने।

दो सफेद और एक काला तकिया रखा है। एक ब्लैंकेट रखा है जो कि लाल या सफ़ेद चादर बिछी है सामने। दो सिनरियाँ लगी हैं।

सामने एक लोहे का गेट लगा है जो कि कथई कलर का है। ईटों कि कुछ दिवारे उठी हैं।

सीढ़ियां दिखाई दे रही है जोकि पत्थर की बनी हुई है नीचे कच्चा मैदान है ऊबड़खाबड़ मैदान में बड़े-बड़े पेड़ लगे है और छोटे-छोटे --

हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर मे हम देख पा रहे हैं। यहां पर एक एक स्टेज दिखाई दे रहा है जो की --

फूलों से सजा हुआ है। ऊपर एक झूमर लगा है। सामने एक सोफा लगा है। पीछे टेन्ट लगा है जो कि ग्रीन और लाल कलर का है। सामने दीवार है। नीचे बोहोत सारी लाइट --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

पर गाड़िया जा रही है। सामने बोहोत सारे घर दिखाई दे रहे है। नीचे एक नदी दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारे उम्म अ नाव चल रहे है।

सभी पुरुषों ने पीले कलर की अ कपड़े पहने हुए हैं और महिलाओं ने साड़ी पहनी हुई है जो की लाल कलर --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

बच्चे दिखाई दे रहे है चारों तरफ सजावट की गयी है कही फुग्गों से और कही --

जिन्होंने सफेद शर्ट पहनी है हाथ मे पेपर लिए पढ़ रहे है। दुकान मे चारो तरफ अलमारियां है और अलमारियों मे समान रखा --

हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है। उस तस्वीर में हम देख पा रहे है यहाँ पर हमे एक मेदान दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति सामने माइक पर खड़े हुये हैं। सभी व्यक्तियों ने सफेद अ सफेद कपड़े पहने हैं और ऊपर ऑरेंज टोपी लगाए और कुछ व्यक्तियों ने सफेद --

इसमें बहुत सारे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं कुछ खिलाड़ीयों ने लाल यूनिफॉर्म और कुछ खिलाड़ीयों ने अ फिरोजी यूनिफॉर्म पहनी हुई है।

सिनेमास दिखाई दे रहा है जिसपर पी वी सी पी.वी.आर. सिनेमा लिखा है सामने मैंदान है मैंदान में बहोत सारे खंबे लगे है जो कि स्टील के हैं।